ये चित्र मां हमतें एक बड़ी ईमारत का निसाण द्वी दुकानि छन दिखेण लगीं जों बटी एक दुकानी खुली छं।

ये चित्र मा हम त सड़कीम गाड़ी खड़ी छन दिखेण लगीं किनारा बिटी एक बड़ी इमारत दिखेण लगीं जै पर हल्कू भुरयेणु रंग छ होयुं।

ये चित्र मा हम त एक बाटू दिखेण लग्युं जै का किनारा फणि हम त कुछ गात छ दिखेण लगीं अर उंका किनारा फणा हम त कुछ डाला दिखेण लग्यां।

गाड़ी हम त बिचम एक घेरा दिखेण लग्युं जै का एंच एक मूर्ति च ओर पोर हम त बड़ी-बड़ी इमारत भी दिखेण छा लगीं।

वै का अगाड़ी एक मेज छ रखीं जै का एंच हम त कुछ कांगला कैंची अर कुछ डबली डुब्ली दिखेण छा लगीं पैथर हम त कुछ दीवाली पर फोटो भी दिखेण लगीं।

ये चित्र मा हम तें एक बड़ा पहाड़ का भीतर एक बड़ी गुफा दिखेण लगीं जफणा हम तें भ्वां फणा छोटा छोटा गारा करन दिखेण लग्यां।

ये चित्र मा हम तें एक बड़ु बस अड्डा छा दिखेण लग्युं जफणी कुछ बस छन खड़ी होईं जूं कु रंग लाल अर सफेद छन।